ये देखिए यहां पे एक स्टेज बना हुआ है ये स्टेज बहुत ही सुंदर है यहां पे कुर्सियां भी हैं।

एक फ्रूट का दुकान है इस फ्रूट के दुकान में बहुत सारे फ्रूट है।

ये दिखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है यहां पे बहोत सारे बलून्स भी लगे हुए हैं।